सामने बड़े बड़े घंटे लटके हुए हैं। चार पांच इकट्टा आस पास की दीवारों का कलर सफेद है। नी --

पीछे हरे लाल और क्रीम कलर का टाइल्स लगी हुई है बीच में गोल घेरा बना हुआ है जिसके आस पास कुछ मुर्तियॉ लगी हुई है।

मैदान ही मैदान है। बोहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सा टावर नज़र आ रहा है। अ --

यह एक रोड है जिसके ऊपर कुछ ट्रक जा रहे हैं बसे जा रही हैं और बड़े-बड़े खंभे रखे हुए हैं ऊपर से एक --

बड़ा सा दरवाजा है नीले कलर का जो कि खुला हुआ है। अंदर एक मटका रखा हुआ है। स्टैन्ड बना हुआ है। कुछ गोल घेरे बने हुए हैं जिसके आसपास --